यह एक पार्क है और यह आप देख सकते है ऐलिफेंट है ओ --

यहाँ पर आप देख सकते है प्रजापति अह चोपाल बसंत गाउँ नई दिल्ली लिखा हुआ है ।

यह एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप पर हम डीजल भरवाते है ।

उस मैट पर वाइट कलर की स्लीपर निकली हुई है और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी लाइटिंग लगी है।

और उसके सामने नीचे जमीन में देख रहे हैं खाली ग्राउंड में आपको पानी दिख रहा है ।

और बहुत सुंदर-सुंदर से गिफ्ट आइटम हैं इसको हम गिफ्ट कर सकते है लाइक --

ये एक अंजली का पेस्ट्री शोप है।

यहां पर दिखा हुआ है नागी ज्‍वेगर्स य ह एक ज्‍वेलर्स की दुकान है और ये --

सामने एक दो फोटो लगी है उन फोटो फेस हाइड है --